यह एक ऑफिस लग रहा है।

इसमें पेड़ है हरि भरी घास है।

यह बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है यहां कुछ कस्टमर बैठे हैं रेस्टोरेंट बोहोत एक्सपेंसिव लग रहा है।

शिवम किड्स एंड क्वीन का बोर्ड लगा है।

यह एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय इसको आश्रम जैसा भी बोला जा सकता है।

इस घर का निर्माण हो रहा है।

यहां एक बड़ा सा स्कूल या कॉलेज हो सकता है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सीढ़ियां हैं कुछ आदमी आ रहे हैं।

यहां रॉयल पराठा छोले भटूरे और भी बहोत सारी चीजें मिलती है।

यह बहुत सुंदर घर है सामने पेड़ पौधे हैं।

यह कार और बाइक का शोरूम या फिर पार्किंग लग रही है।

बहोत सुंदर तरह से सजाया गया है।

यह एक सड़क है सड़क के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है सड़क बहोत ही खुली हैं।

एक कार खड़ी है बाइक खड़ी है चारों तरफ हरियाली है बिजली का खंबा है।

छोटी छोटी घास हैं प्यारे प्यारे फूल हैं।

यह मेट्रो पिलर नंबर है इसके नीचे बहोत सारी दुकान है।